बहुत सारे खंभे हैं पत्थरें हैं छोटे-बड़े।

और बहुत सारे लोग हैं बहुत सारे लोग हैं जो दिखाई दे रहे हैं।

गोल घेरा में खड़ी हुई दिख रही है।

एक बाइक है सारे साइड में एक लाइटहाउस है।

यह एक रोड है जहाँ आस-पास--

एक बीकानेर है जहां पर बहुत सारे मिठाइयां दिख रही है।

एक बहुत बड़ी बिल्डिंग है बिल्डिंग के मेन गेट मे बहुत सारे चप्पले नजर आ रही है।

और ड्रम है बहुत सारे प्लास्टिक क्रेट दिख रहे हैं।

यह एक बहुत बड़ा पार्क है ग्राउंड टाइप दिख रही हैं।

लाइटिंग लगी हुई है ऊपर मिरर है दो जैनस है दो लेडिस है बहुत सी कुर्सियां लगी हुई है।